तस्वीर पर मुझे सोफे दिखाई दे रही है।

परडे दिखाई दे रही है।

खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं

इस तस्वीर पर मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे कई सारे बोतले दिखाई दे रही है।

तस्वीर पर मुझे कई सारी लड़कियां दिखाई दे रही है।

दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पे मुझे कईं सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर खाने वाले चीजे भी दिखाई दे रही हैं।

तार भी दिखाई दे रही है।

और लोहे भी दिखाई दे रही है।

कई सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रही है।

सीढ़ी भी दिखाई दे रही हैं और भारत के तिरंगे भी दिखाई दे रही हैं।

लोहे भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रही हैं।

कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

लोहा दिखाई दे रही है।

रोशनी दिखाई दे रही है।

कैलकुलेटर भी दिखाई दे रही है।

टैंक भी दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान भी दिखाई दे रही है और टावर भी दिखाई दे रही है।

दरवाजा भी दिखाई दे रही है।

छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

बैनर भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जोकि ब्रिज पर खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

पत्थर भी दिखाई दे रही है।